और नीचे एक बोर्ड लगा है।

और पिलर खड़े हैं लोहे के ही हैं।

साइडों मैं छोटे छोटे पौधे लगाएं हैं जिनमें येलो येलो से कुछ फूल जैसे लग रहे हैं।

क्योंकि बेस उसका क्रीम रंग का है क्यू_आर कोड भी पड़ा है और एक बोटल भी पड़ी हु--

के एक सामने बतख है जो कि वाइट रंग की है।

डेकोरेशन के लिए बलूंस यूज करें हैं लाल व्हाइट ब्लू और येलो --